बिल ये वो जिम है से बहुत बड़ी जिम है इसमे सामान रखा मशीनें रखी जिम भी जिम ही है ये बहुत बड़ी--